मुझे इस फोटो में पेड़ दिखाई दे रहा है।

कृष्ण की शॉप दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो में--